बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ बोरी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर एक आदमी बोरी ले जाते हुए भी दिखाई दे साइकिलें भी बहोत सारी रखी हुई यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी है।